और कुछ बच्चे जिन्होने व्हाइट कलर की पोशाक पहन रखी है।

इस पर इंडिगो लिखा हुआ नजर आ रहा है।

जिस ने गोद में एक बच्चे को पकड़ रखा है।

जिसने नीले कलर की पोशाक पहन रखी है।

जमीन पर कंक्रीट की ईंटे बिछी हुई है।

तस्वीर में सामने की ओर हमें दो बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही हैं जो काफी बड़ी आकार की है।

जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंगे बनी हुई दिखाई दे रही है।

इनमें कई सारी खिड़कियां तथा कॉरिडोर बने हुए हैं।

खाली मैदान दिख रहा है जिस पर घास उगे हुए हैं।

ये जगह दिख रही है जिसपे कोंक्रिट की टाइलें बिछी हुई हैं।

एक शख्स सामने की ओर खड़ा दिखाई दे रहा है।

एवं कई सारे बड़े बड़े पेड़ भी यहां लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

अपनी तस्वीर खींचाता हुआ दिखाई दे रहा है।

तस्वीर किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का है।

ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं।

कुछ फायर एक्टिंग्यूशर भी रखे हुए दिखाई दे रहे है।

यहां कुछ लोग भी मौजूद नजर आ रहे हैं।

सामने दीवार पर एक टी_वी लगा हुआ है जिसमें किसी प्रकार का शो चल रहा है।

टेबल तथा कुर्सी लगाकर बैठा हुआ दिख रहा है।

कई सारे तारे भी नजर आ रही है।

तस्वीर में किसी प्रकार का कार्यक्रम सेलिब्रेट किया जा रहा है।

एक महिला सीढ़ी पर झाड़ू लगाती हुई दिखाई दे रही है।

तथा एक नीले रंग का प्लास्टिक का ड्रम भी नजर आ रहा है।

जहां कई सारी कतार में टेबल तथा कुर्सियां सजाकर रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

आपने फोन से यहां की तस्वीर खींचता हुआ दिखाई दे रहा है।

टापू जैसा दिख रहा है जिस पर हरे हरे पौधे उगे हुए नजर आ रहे हैं।

यह बांस की सहायता से कपड़ो को बांधा गया है।

प्रो गेमर कैफे लिखा हुआ दिख रहा है।

और आकार वगैरा बनाया गया है।

जो पीले एवं नारंगी रंग के हैं।

एवं एक हरे रंग की टंकी भी लगी हुई है।

लाल एवं नीले रंग का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है।

तस्वीर में एक चौकोर आकर दिख रहा है जिसमें कई सारे हरे हरे पौधे लगे हुए हैं जिनमें लाल रंग के खूबसूरत फूल उगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने की ओर कई सारे बड़े बड़े आकर के पेड़ मौजूद है जो अलग अलग प्रजाति वाले है।

इनमें बहोत घने घने पत्ते लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सब्जी विक्रेता भी सड़क पर बैठकर सब्जी बेचते हुए नजर आ रहे हैं।

नारे एक बग्गी कार जो लोगों के बैठने के लिए खड़े हैं वह दिखाई दे रही है।

तस्वीर में सामने की ओर खाली सड़क दिखाई दे रही है।

ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी नजर आ रहे हैं सामने की ओर।

पिक्चर किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की है।

यहां लोहे के सरिए बिछाए गए हैं।

बिजली का खंभा भी दिखाई दे रहा है।

यहां कुछ लोग भी मौजूद हैं जो कसरत करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक शख्स जिसने लाल कलर की टी-शर्ट तथा ब्लू कलर की पैंट पहन रखी है वह बाहर की ओर खड़ा है।

इस घेराव पर लाल रंग से पेंट किया गया है तथा अंदर की ओर कई सारे छोटे छोटे बच्चों के खेलने वाले झूले लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसके आजू बाजू कई सारे बड़े बड़े आकार वाले पेड़ नजर आ रहे हैं जिनमें बड़े साइज के पत्ते लगे हुए हैं।

लाल कलर की टी शर्ट पहने एक शख्स खड़ा दिखाई दे रहा है।